हमें यहां पर ट्रांसपोर्ट का कुछ नजर आ रहा है अ लॉरीज वगैरह खड़ी हुई है और ब हमें एक --

और स्काई भी हमें नजर आ रहा है और एकदम ये कुछ लकड़ी का बना हुआ बॉक्सेस हमे नजर आ रहे है जिसके अंदर कुछ ब्लैक --

दान कर रहे है लोगो में और ये कोई रेलिजेस प्लेस नजर आ रही है हमे जिसके नाम पर ये कुछ दे रहे है।

यहां पर एक बहुत बड़ा सा मैदान नजर आ रहा है हमें एकदम मैदान यहां पर बहुत सारे--

एकदम पीकॉक कलर जैसी है और पीछे उसकी पूंछ व्हाइट कलर की भी है।

टॉयलेट भी नजर आ रहा हमे पीछे साफ सुथरा दिख रहा है और यह कोई पार्क या एम्यूजमेंट पा पार्क है जहां पर वॉशरूम के पास ये क्रा--

एंड वापस बाजू में एक स्टिकर लगा हुआ है जिसमें लिखा है वायवा एंड अल्युमिनियम कंपोजिट शीट लिखा हुआ है एंड ये एकदम से स्टोर नजर आ रहा है हमें अलग सा।

लड़के लड़कियां डांस सब मिक्स होकर खेल रहा है और उ उधर पीछे भी हमें कुछ राइट्स नजर आ रही है जिसमें ना दो दो अ मर्द बैठकर बात--

यहापर हमे नज़र आ रहे है ये एक मेडिकल शॉप है जहाँपर बोहोत सारे मेडिकल के जो भी लाइक सिरपस होते है सिरपस मौजूद है।

अपप्लीच मौजूद है कुछ पोडर्स मौजूद है एंड ग्लूकोस ग्लूकोन डी वगेरा--

ऐन जो बहोत सारे हैं ऐन सेनेटरी पैड भी मौजूद हैं यहा पर ऐन हर चीज इधर मौजूद है ये एकदम पर्पल कलर का कॉटन भी है।

एंड यहां पर ना कोई दो तीन स्टाल लगे हुए हैं एंड बहोत सारे लोग अंदर बैठकर कुछ खा पी रहे हैं।

एंड यहाँ पे बहुत सारे झाड़ खेत वगेरा सब कुछ हैं एंड यहाँ पर दो ग्रीन कलर के टंकी भी हैं ।

अ सुबाहा ओपन किया है तो कोई अभी व्यक्ति आया नहीं खाने बट पुरे बोहोत लीन एंड क्लीन में है एक व्यक्ति कोनेमे बैठा हुआ है।

एक दम स्टैंड है एंड अंदर हम जाकर स्लाइड में हम झूल सकते हैं एंड एक बच्ची हमें दूर से नजर आ रही है बहुत प्यारी बच्ची है और एकदम उसने --

तस्वीर में हमे नजर आ रहा है की क्वीन हार्ट वॉटर पार्क और यहाँ पर बोहोत ही प्यारा वॉटर पार्क जो एकदम स्टोन से बनाया हुवा है।

और पीछे ये बुलडोजर के पीछे ही हमें एक और ट्रेक्टर टैम्पू नजर आ रही हैं जो बड़ी हैं ।

और आजू बाजु हमें लग रहा हैं की एक ग्रीन कलर की बहुत सारे फारेस्ट हैं एंड एक पतली सी वा टावर हैं ।

यहां पे हम एक मंदिर नजर आ रही है जो मंदिर या मस्जिद पता नहीं वो है क्या

यहाँ पर हमे नजर आएगी यहाँ पर कुछ लोग मजदुर लोग काम कर रहे है जैसे चार लोग है एक ने पर्पल कलर का शर्ट पहना है और एक ने --

जी यहा पर अ सामने के दो स्टूडेंट्स ने पहना हुआ है बाकि दो सिर्स खडे हुए है।

एक ने सिर्फ व्हाइट कलर के फॉर्मल्स पेहनी है एक ने ब्राउन कलर का स्कर्ट भी पेहना है।

हमें यहां पर बहोत बड़े बड़े जो लोड के ट्रक्स आते है वो नजर आ रहे हैं और यहां पर हमें--

अ चिड़ियाँ नजर आ रही हैं और बहुत ग्रीनरी हैं एकदम जंगल टाइप हैं ये एंड यहाँ पर बड़े बड़े हैवी हैवी फत्तर नजर आ रहे हैं।

बहुत कुछ है ग्रीन कलर का क्रेन है इसका हुक बहुत शार्प है एंड ये बाजू में हमें एक बहुत बड़ा पोल नजर आ रहा है और ये एकदम बहुत ही अच्छे अह--